यहाँ पर तीन बस खड़ी हुई है बस सफ़ेद कलर की है बस एक ग्राउंड में खड़ी हुई है बसों के पीछे एक बिल्डिंग है।

सड़क भवन के सामने हरियाली छाई हुई है जहाँ कि वहाँ पे पेड़-पौधे लगे हुए हैं थोड़ा सा कचरा भी फैला हुआ है सड़क कच्ची है।

यह एक जगह है जिसमें सफ़ेद कलर का पंखा लगा हुआ है क्रॉस का निशान लगा हुआ है बहुत सारे चेयर खड़ी कुर्सियां रखी हुए है जो की लाल कलर की है।

यहाँ पर पेड़ है जो की हरे कलर का है उसके आस - पास कई सारे ओवन दिखाई दे रहे है जो की रंग- बिरंगे कलर के है और उनके सामने से सीढ़ियां आ रही है।

यहां पर एक बहुत बड़ा भवन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर से तार जा रहे हैं विद्युत पाइप लगा हुआ है उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है लाइट लगी हुई है |

भवन के सामने एक छोटा सा गेट लगा हुआ है जिसके मंदिर की आकृति का और एक क्रॉस का निशान बना हुआ है |

आगे पीछे हरियाली छाई हुई है उसके सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जिस पर जाली लगी हुई है उसके अन्दर भी एक कार खड़ी है जो सफ़ेद कलर की है सटर लगा हुआ है तीन दुकानें खुली हुई है।

उसके बराबर में भी ईटों का मकान बना हुआ है पीछे वाले मकान पर जालियां बनी हुई है यहां पर यह ईंटों का बना हुआ --

उसके सामने एक मार्ग जा रहा है जो कि सीमेंटेड रोड है उसके सामने भी एक स्टील के पाइप पर एक बोर्ड लगा हु --

गाड़ी सिलेटी कलर की है उसमें लाइट दिखाई दे रही है उसपे शीशे लगे हुए हैं उसके अंदर से एक पीले कलर का पाइप जा रहा है।

बैठने के लिए एक कुर्सी है जो उसके सामने एक नीले कलर की मोटर साइकिल रखी हुई है उसके दो पहिये हैं उसपे मिरर लगा हुआ है आगे पिछे।